जहाँ पर तीन स्कूटी खड़ी हुई हैं।

अ जिसमें ऊपर की तरफ छः से सात लैंप टंगे हुए हैं ।

दे रही है जिसने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा है।

वो आधा ढका हुआ है टेम्पू और उसपे एक पीले कलर की --